रोड पर एक बस है बस के बाजु--

हरे-भरे घास भी उगी हुई है यहां पर।

नीचे एक घर भी दिख रहा है उसके ऊपर लाल रंग का टीन शेड मारा गया है।

खम्भे की केबल्स भी लटक रहे हैं।

ऊपर एक खंभा भी दिख रहा है।

बाजू एक काले रंग का डब्बा है उस पर फुग्गे है पीले रंग के--

नीचे कार्पेट भी बिछाया गया है।

और यहां पर काले रंग की भी कुर्सियां हैं।

खिड़की के अंदर पर्दा भी दिख रहा है।

बिल्डिंग पर एक छोटा सा बोर्ड‌ लगा हुआ है हॉस्टल का यहां पे ये दिन है।

यहां पर टेबल पे पानी की बोतले और कई बोतले रखी हुई है।

यहां पर एक बड़ा सा घर दिख रहा है।

गल ये है उस पर कचरा पड़ा हुआ दिख रहा हैं।

यहां पर बड़े बड़े पानी के मटके भी लगे हुए हैं।

यहां पर एक दुकान है दुकान में बहुत सारे चिप्स की परनियां लटक रही हैं।

ऊपर आसमान भी नजर आ रहा है और ये दिन है।

बहोत से लोग कुर्सियों पे बैठे हुए हैं लाल रंग का कारपेट बिछाया गया है।

एक आदमी ने मास्क पहना हुआ है।

और लाइट का खंबा भी है। ऊपर एक लाल रंग का बड़ा सा बोर्ड भी है।

और यहां पर दो औरतें चलकर आ रही हैं।

देखने में तोते लग रहे हैं।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

के नाम पे लाइटिंग्स लगी हुई है।